इस तस्वीर में बहोत सारे लोग खड़े हुए हैंऔर कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

तस्वीर में काले रंग की प्लेट पर कुछ खाना रखा हुआ है खाने के साथ कुछ सलाद भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई गई है खाने में चटनी भी रखी गई है।

जहाँ पर बहोत सारा समान टंगा हुआ है।

यहां पर एक कांच का गेट भी बना हुआ है।

नदी में हमे तीन नाव भी नजर आ रहे है।

यहाँ पर कुछ लोग टहलते हुए भी हमको नजर आ रहे है।

गार्डन मे कुछ छोटे-छोटे फूल के पेड़ भी लगे हुए है।